यहां पे वाइट वाइट कलर का एक स्टैचू भी दिखाई दे रहा है।

हाल में जेनुइन नेक्सा एसेसरीज भी लिखकर दिखाई दे रहा है सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा फॉर्मल पैंट भी रखा हुआ है।

रैक में एक कोट भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में बहुत सारा सोफा कुर्सी और टेबल दिखाई दे रहा है।

नीचे में रेड कारपेट बिछा के दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बरबर शॉप दिखाई दे रहा है।

के अंदर इंसान भी दिखाई दे रहा है अंदर में चेयर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक फ्लावर पॉट भी दिखाई मिल रहा है।

हॉल में बोर्ड भी दिखाई दे रहा--

वॉल के सामने एक अलमीरा भी दिखाई दे रहा है । अलमीरा के ऊपर में एक कार्टून बॉक्स पर रखकर दिखाई दे रहे हैं।

ब्रिज के नीचे और आस पास में बहोत सारा पेड़ भी निकल के दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के अन् बाहर में बहोत सारा इंसान का भीड़ दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक लैबोरेट्री दिखाई दे रहा है । अंदर में बहोत सारा सामान रखे हुआ हैं । बहुत सारा कार्टून बॉक्स भी दिखाई दे --

काउंटर के सामने में स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

काउंटर में मनी प्लांट भी रख के दिखाई दे रहा है।

औज़र के सामने में दरवाजा भी दिखाई दे रहा है दरवाजा के सामने रेड कलर --

रूम अंदर बहोत सारा कैमरा स्टैंड दिखाई दे रहा है।

एक स्टेंड के ऊपर में ग्रीन कलर का कपड़ा भी रखा हुआ है आगे में एक रूम भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में गवर्नमेंट का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

टेबल के सामने में बहोत बड़ा बड़ा सोफा भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर में एक पानी का बोटल भी दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर में स्पून का स्टैंड भी रखके दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में और अलग बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

एक और मेडिकल का इक्विपमेंट मशीन भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के सामने में फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहे ऊपर में लाइट भी ज़्वल के दिखाई दे रहे।

हाल में बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा --

अंदर में वाइट कलर का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता पार करके बहुत सारा जंगल और पेड़ भी दिखाई मिल रहा।